एक कॉरिडोर है बहोत बड़ा-सा कॉरिडोर है। यहाँ पीछे की तरफ लोहे की बड़ी-बड़ी जालियाँ लगी हुई हैं।

इसके ऊपर पर्दे बिछाए गए हैं नीले और सफ़ेद कलर के सामने की तरफ एक सोफा रखा हुआ है इसके ऊपर दो लड़के बैठे हुए पीछे की तरफ गणेश की मूर्ति रखी हुई है फूलों से डेकोरेशन --

एक का रंग हरा है और एक का रंग नीला है ज़मीन के ऊपर टाइल्स लगे हुए हैं दो आदमी खड़े हुए हैं दोनों ने अलग अलग रंग के कपड़े पहन रखे है।

ये लड़का है जिसका कुछ दाढ़ी मूछें हैं और उसने गले मे दुपट्टा डाल रखा है शेरवानी पहना हुआ है अ सभी लोग यहाँ पर स्माइल कर रहें हैं और --

क्यूट से बच्चे बैठे हुए हैं ऊपर जाने के लिए जीने बनाए गए हैं इन जीनों के ऊपर अ पिंक कलर का कार्पेट बिछाया गया है पीछे की तरफ टेबल लगी हुई है जिसके ऊपर रेड कलर का कपड़ा बिछा है और टीचर्स बैठे --

दीवारों के ऊपर है नीले कलर के टाइल्स लगे हुए हैं यहाँ पर हल्का -हल्का -सा अँधेरा हो रहा है एक लाइट जल रही है ऐ यहाँ पर अब पूजा की जा रही है एक दिया जल रहा है।